घर से चलते हुए उस घर से जा सकते हो।

ये बहुत सारे महिला हैं जो घर के बा सामने खड़े हैं जो सब किसी का ड्रेस सेम हैं सिवाए एक लेडिज को छोड़ के एक लेडिज का जो साड़ी है वो सफ़ेद कलर का है ये लोग सीढ़ियों पर खड़े हैं कुछ सीढ़ी से नीचे खड़े हैं कुछ सीढ़ियों पर खड़े हैं बहुत अच्छी बात है स कोई गोरा नहीं दिख रहा है सबके सावलें हैं बहुत अच्छे --

इंग्लिश सिख सकते हो और बहुत सारे व्यक्ति इंग्लिश सीखने के लिए गये है और कोई सीखेंगे।